और पर्दे खड़े हुए हैं जो सफेद रंग की और कत्थई रंग की है दीवारे हैं।

पीछे एक साइड में बोरी डाली गई है जो हरे रंग की बोरी है एंड पीले रंग की काला रंग की पीछे एक साइड टाइल्स बिछी है कुछ पैकेट रखे गए है काउंटर्स बने गए है ऊपर लाइट लगाए गए है जो व्हाइट कलर के है।

--और बिल्डिंग है बड़ी-बड़ी लाइटें लगाई गई हैं सफेद रंग की सफेद रंग का आसमान है अगल-बगल पेड़-पौधे हरी पत्ती--

एक प्लस का चिह्न बना हुआ है खंभे गड़े हुए भूरे रंग की टाइल्स भी लगे हुआ है जो काले रंग का टाइल्स हैं अगल-बगल सफेद रंग की पट्टी हैं सफेद रंग --

दो गाय के चित्र है और कुछ लोग ए रोपा लगा रहे हैं धान लगा रहे हैं।

जिम रूम में जो प्लेट रखी गई है काले और कत्थाई रंग की अगल-बगल दीवार सफ़ेद रंग का कांच लगी हुई है।

खंभे गड़े है जो भूरे रंग के है| कुछ लोग बैठ खड़े हैं जो काले रंग के कपड़े और नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं ।

और सामने सीढ़ी बनाई गई है सामने साइड पे दीवाल है सफेद रंग की लाइटे लगाई गई है नीले रंग की और सफेद रंग की लाइट जल रही है और पंखा चले जो काले रंग का का है।

--सा बिल्डिंग है| पी-पीले रंग का पोस्टर लगी हुई है| सफेद रंग की सामने साइड मे गुब्बारे है लाल रंग की| ऊपर के साइड मे तार गया हुआ जो काले रंग की है।

खंभे गड़े हुए है जो बांस गड़ी हुई है रोड गया हुआ है बोरी में बहोत सारे समान रखे गए हैं जो छोटी बोरी और बड़ी बोरी है और सफेद और नीले रंग के आसमान है खंभे गड़ी हुई है और ऊपर की साइड से तार गया हु --

गाड़ी खड़ी जो काले रंग की है जो कांच लगी हुई हैं अगल बगल पोस्टर लगी हुई हैं सफेद रंग की एक आदमी अंदर साइड पे जा रहा है सीडी बनी हुई हैं